यह एक नदी है। नदी बहुत चौड़ी है। इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। इस नदी के चारो ओर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे --

और बोहोत सारी गाड़ियां भी लगी हुई हैं। यहाँ पे बोहोत ताजी और अच्छी सब्जी मिलती है। बोहोत बहो भीड़ लगी हुई है।